इस इमेज में हमें नीचे की तरफ पीली और सुखी घनजाच या घासें दिखाई दे रही हैं।

साइड में ही एक बड़ा सा पत्थर भी रखा है और बीचों बीच प्राचीन स्थल दिखाई दे रहा है।

उनके बीच में ही एक जे_सी_बी खड़ी है। जिसका रंग पीला है।

ये सभी मुख्यतः डिनर सेट में उपयोग किए जाने वाले बर्तन हैं जिनका रंग अलग-अलग है।

इसके पीछे एक दरवाजा भी लगा है जोकि खुला हुआ है।

इस इमेज में हमें ऊपर की तरफ एक पंखा टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दीवार पर फूलों से सजावट की गई है।

बाएं साइड में ही एक छोटा मैजिक रखा गया है।

इस इमेज में हमें बोहोत सारी कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर गुब्बाड़े लगे हैं और सजावट की गई है।

नीचे की तरफ जय माता हिंदी में लिखा गया है और ये मूर्तियां माता जी की हैं।

इस इमेज में हमें दाएं साइड में पेड़ो का समूह दिखाई दे रहा हैं।

बाएं साइड में पशु संरक्षण केंद्र गौशाला ललितपुर उत्तर प्रदेश हिंदी में बैनर पे लिखा हुआ है।

इस इमेज में हमें दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की सेल्फी ले रहे हैं।

मूर्ति के अगल बगल भी दो छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई हैं।

इस इमेज में हमें अलग अलग प्लास्टिक फूलों की सजावट दिख रही है जो कि प्लास्टिक के गमलों में रखे हुए --

इस इमेज में हमें दाएं साइड इलेक्ट्रिक के समान दिखाई दे रहे हैं जिनमें में से कुछ सामान फ्रिज है तो कुछ कुलर हैं।

सबका साइज अलग अलग है और वो छोटे बड़े हैं।

नीचे छोटे अक्षरों में निवेश रश्मि मुस्कान मोबाइल एक्सरीज एंड स्मार्ट गेजेट्स इंग्लिश में लिखा है।

बीच में ही एलजी का एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें से लाइट भी आ रही है और उसका बैकग्राउंड लाल कलर का है।

सामने ही एक छोटे बोर्ड पे सेल्फ सर्विस इंग्लिश में लिखा हुआ है।

में हमें बहुत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे--